रखे हुए हैं कुछ लाल फूल रखे हुए हैं और कुछ हरी पत्तियाँ भी बहुत सारी रखी हुई हैं बेचने के लिए--

यहाँ पर यह जो नजारा दिखाई दे रहा है यह बहुत ही बड़ी किसी टायर की दुकान का नजारा दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत सारे--

टायर और उसकी टायर जिसमें लगाया जाता है उसकी ग्रिल वगैरह बेची जाती है और बगल ही में एक किराना की दुकान दिखाई दे रही है।

कुछ बातें कर रही हैं बड़ी गाय की बहुत ही लंबी पूंछ दिखाई दे रही है।

यहाँ पर ये जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं किसी बहुत बड़ी शॉप का दुकान का दृश्य दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक तरफ--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

यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी शानदार बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि दो मंजिला बनी हुई है जिसमें बहुत सारे--

मेहराब द्वार बने हुए हैं और इस इस बिल्डिंग का रंग चॉकलेटी कलर का और कुछ पीले कलर का दिखाई दे रहा है और आसपास छोटे-छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यहाँ पर यह जो दिखाई दे रहा है यह लाल कलर के बिल्डिंग का दृश्य दिखाई दे रहा है इसमें लाल कलर की बहुत ही खूबसूरत--

पेंटिंग है और इसमें सफेद-सफेद खिड़कियाँ और सफेद कलर के दरवाजे दिखाई दे रहे हैं ऊपर व सफेद कलर की बालकनी भी दिख रही है इसमें लोहे की ग्रिल लगी हुई है।

यहाँ पर यह जो दिखाई दे रहा है यह चांद मोटल दिखाई दे रहा है जोकि सफेद कलर के अक्षरों में लिखा हुआ है यहाँ पर ब्रे--

और लंच वगैरह खाने के लिए बिकता है और सामने ही कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी बिकता है जो बहुत ही बड़ा है और बहुत सुंदर है।

यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है यह किसी बहुत ही बड़े डैम का दृश्य दिखाई दे रहा है।

जहाँ पर बहुत सारा पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत ही तेज धार से और आसपास पेड़ बहुत--

सारे हरे भरे पेड़ छोटे-छोटे झाड़ियां लगी हुई हैं और ड्राम से बहुत तेज पानी गिर रहा है।

यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ये किसी बिल्डिंग का बहुत ही बड़ा पार्किंग एरिया दिखाई दे रहा है जहाँ पर--

और आसपास पीले कलर के कुछ टंकी बनी हुई है और बहुत ही बड़ा पार्किंग एरिया है ये--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

हुई है और एक मशीन और रखी हुई है यहाँ पर कुछ काम चल रहा है।

यहाँ पर जो यह जो दृश्य दिखाई दे रहा है यह किसी शादी का दृश्य दिखाई दे रहा है जहाँ पर रंग बिरंगे खंबे सजे हुए हैं लाल पीले नीले हरे।

लाल पीले नीले कपड़ों के खंभे बने हुए हैं और कुछ झालर लगी हुई है फूलों की और गुब्बारों से--

एक आदमी खड़ा हुआ है उसने ग्रे कलर की जैकेट पहनी हुई है और नीचे व्हाईट कलर का पेंट पहना हुआ है और जेब में हाथ डाले हुए।

यहाँ पर ये दृश्य दिखाई दे रहा है ये मेन रोड का दृश्य दिखाई दे रहा है जहाँ पर सामने--

इसमें लाल कलर के सफेद कलर के फूल लगे हुए हैं और हरे भरी आसपास--

यहां पे ये दृश्य दिखाई दे रहा है यहां पर हरे कलर की कारपेट बिछी हुई है जिसमें बहोत सारी सफेद कुर्सियां लगी हुई हैं।

और पास ही छोटे-छोटे बहुत सारे गमले रखे हुए हैं जिसमें हरी भरी--

यहाँ पर ये दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये लगता है एक होटल का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें आमने सामने कुछ कमरे बने हुए हैं जिस कमरों में कत्थई कलर का --

दरवाजा लगा हुआ है और एक गली आगे गई है जहाँ पर ऊपर एक पंखा लगा हुआ है और सामने एक आदमी खड़ा हुआ है कुछ बातें करते हुए--

जिसने कत्थई कलर की शर्ट पहनी हुई है और वे लोग कुछ बातें कर रहे हैं।

कुछ बैग वगैरह बोतल वगैरह टंगे हुए हैं बच्चों के लिए रंग बिरंगे और कॉपी पेन वगैरह यहाँ पर रखी हुई हैं बिकने के लिए।

यहाँ पर ये दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक नीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें वेल वेर का मिल्क बार लिखा हुआ है और--

यहाँ पर एक लाल कलर की गाड़ी खड़ी हुई है जोकि--

लगे हुए हैं जो कि ट्रक के ऊपर झूल रहे हैं और रास्ते में ट्रक खड़ा हुआ है।

यह यह जो दृश्य दिखाई दे रहा है किसी स्कूल का दृश्य दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है।

स्कूल में सफेद कलर की पेंटिंग की गई है और--

यहाँ पर ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है ये किसी कारपेट की बहुत ही बड़ी दुकान का दृश्य दिखाई दे रहा है जहाँ पर--

और सामने ही बहुत बड़ा तालाब पानी से भरा दिख रहा है और छोटे छोटे हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

और छोटे-छोटे हरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जहाँ पर और बीच में रास्ता गया हुआ है जहाँ पर दो आदमी चल रहे हैं कुछ बातें करते हैं--

यहाँ पर ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ पर मै बीच में बड़ा सा मैदान बना हुआ है।

यहाँ पर ये एक बड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक दुकान दिखाई दे रही है जहाँ पर--

बीच में बड़ी सी टेबल रखी हुई है जिसमें खंड बने हुए हैं और सामने ही बहुत सारी छोटी-छोटी ले--

पुरानी चीजें बिकने के लिए रखी हुई हैं जिसमें रेडियो वगैरह रखा हुआ है सभी कुछ रखा हुआ है।

कलर के टंगे कुछ लाल कलर के पाउच टंगे हुए हैं कुछ पीले कलर के पाउ पैकेट टंगे हुए हैं।

दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत ही सुंदर बिल्डिंग सजाई गई है यहाँ पर लाइटिंग बहुत लगी हुई है सभी जगह पर और एक आदमी खड़ा हुआ है।

यहाँ पर ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है किसी खेल के मैदान का दृश्य दिखाई दे रहा है जहाँ पर--

इसमें लाल कथा सफेद पीच कलर --

और नीले कलर के पर्दे टंगे हुए हैं जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे ढेर सारे पर्दे बिकने के लिए टंगे हुए हैं।

आगे की लाइन में बैठे हैं और वहाँ पर खाना परोसा जा रहा है परोसा जा रहा है सभी को कुछ लोग सफाई कर्मचारी सफाई में लगे हुए हैं।

यहाँ पर ये किसी सुंदर सी ऑफिस का नजारा दिख रहा है जहाँ पर एक टेबल रखी हुई है जिसमें ब्राउन कलर का--

ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है और सामने दो ब्लैक कलर की चेयर रखी हुई हैं।

लगाया जा रहा है शायद अभी इसमें बहुत ही अच्छा डिजाइन बना हुआ है और--

यहाँ पर ये दृश्य दिखाई दे रहा है यह किसी आर्मी आर्मी ऑफिस का नजारा दिख रहा है जहां पर--

जहाँ पर बहुत सारी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें रखी हुई हैं बिकने के लिए और--

यह पेंटिंग की गई है और पीले कलर की लाइन बनी हुई है और--

यहाँ पर ये जो नजारा दिखाई दे रहा है ये किसी सलून का नजारा दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक आदमी सामने ही--

खड़ा हुआ है काले कलर की शर्ट पहने हुए और उसके आगे टेब कुर्सी रखी हुई है जिसके आगे एक और लड़का खड़ा हुआ वो भी काले कलर की--

यहाँ की दीवारें ग्रे कलर की दिखाई दे रही हैं।